यहां एक सुन्‍दर लान दिखाई दे रहा है लान के अंदर बहुत श्रीजो से सजाया गया हैं।

बाईक लेकर पेट्रोल भरवाते हुए दिख रहे है सामने पेट्रोल पंप का कार्यालय दिख रहा है कार्यालय के सामने एक तेल का टेंकर खड़ा दिख रहा हैं।

एक व्‍यक्ति बैठा हुआ है जिसने चौकी शर्ट पहना हुआ है उसके सामने मिर्ची --

एक व्‍यक्ति खड़ा है जिन्‍होंने लाल टी -शर्ट पहना हुआ है ग्रे कलर का--

यहां पर एक बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है तालाब में एक नाव दिख रही है जिसपर दो व्‍यक्ति सवार दिख रहे हैं।

मंदिर में प्रतिमा स्‍थापित दिख रही है एक हेलोजन दिख रहा है जो मंदिर के ऊपर फोकस --

गिट्टी और सीमेंट का मसाला फैला रहे है एक व्‍यक्ति खड़ा होकर देख रहा हैउन्‍होंने सिर पर पगड़ी बांधा हैं।